इसमें दीवाल दिख रहा है जो व्हाइट रंग का है और उस दीवाल पर एक बैनर टंगा हुआ है जो ब्लैक रंग का उस पे एक चित्र बनाया हुआ है और कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर बेंच दिख रहा है जो व्हाइट रंग का है।

बीच मे खेल का मैदान दिख रहा है जो ग्रीन कलर का घास निकला हुआ है और इसमें विकेट दिख रहा है विकेट जो है वो तीन है और विके --

-- अ जो ब्लू रंग का है उस पे वाइट रंग से कुछ लिखा हुवा है और यहाँ पर जो दीवाल दिख रही है थोड़ी सी वो ग्रीन रंग की है यहाँ पर एक एक डस्टबिन दिख रहा है जो आसमानी कलर का है उसमें ब्लैक रंग की पन्नी --

--में ब्लैक रंग का बेंच दिख रहा है एक बेंच पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने अपने हाथ में फोन पकड़ के रखा है और फोन को कान पर लगा कर रखा है।